एक लड़का सेल्फी ले रहा है उसके हाथ में एंड्रॉइड फोन है।

हॉस्पिटल के सामने कार खड़ी है जो दिख दिख रही है।

दोनों आदमियों के पैर में पुरानी चप्पल पहने हुए एक आदमी ब्लू कलर की शर्ट पहना है एक बैंगनी कलर की शर्ट पहना है।

दोनों साइड में अलग अलग अ अलमारी बनी हुई है और रूम है। रूम के पीछे विंडो थोड़ी थो छोटी छोटी अलमारी बनी है। जो कपड़े हैं के काम आती है।

पिंक कलर की चेयर रखी हुई है चेयर के पास में ब्लू कलर की गद्दी रखी हुई है और पीछे की साइड बेड रखा हुआ है और टेबल के पास काफी सारी प्लास्टिक की कुर्सियां रखी हुई है।

पहाड़ का दृश्य है जिसे देख कर पता चलता है कि अच्छा खासा घूमने का--

पेन रखे हुए ब्लू कलर नीले बीले पीले लाल पीले और सेल है और दुकान है दुकान में काफी सामान है किताबें हैं।

और पैक करने के लिए कागज के थेले भी रखे लटका रखे हैं ऊपर प्लास्टिक का डब्बा रखा है जिसमें काफी सामान--

और एक छत पर काफी सारी लगी हुई हैं।

कट्टा रखा है और सरिया बांधने की तार रखे हुए हैं सीमेंट के कट्टों में रेता या बजरी सीमेंट वगैरह कुछ रखा हुआ है।

नाई ने नेवी ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी है और उसके पैर ऊपर को है जींस का सामान रखा हुआ है।

यह जेंट्स कपड़े की शोरूम है जिसमें काफी लाइट लगी हुई हैं।

कपड़े पहने हुए दो स्टिकर भी रखे हुए हैं जिसमें दो पै ब्लैक पेंट है एक ग्रीन शर्ट है एक वाइट शर्ट है।

आदमी बैठे हैं एक आदमी दूसरे आदमी के साथ बातें कर रहा है लाइट लगी हुई है।

ये शॉप है शॉप के पास एक ईयरफोन वगैरा के बॉक्स रखे हुए हैं।

ये एक जिम का दृश्य है जिसमें लड़का दो लड़के हैं एक लड़के ने पूरी टी शर्ट पहनी ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जींस पहनी है जिम ट्रेनर है।

यह एक नर्सरी है जिसमें काफी पेड़ हैं और पौधे हैं बड़े दो तीन पेड़ हैं एक झोपड़ी है जिसमें कोई आदमी रहता है जो इनकी देखभाल करता है।

जो खाने पीने के लिए है फ्रेश है ब्लैक कलर का और पास की साइड में दो डंडे र--

यहां पर काफी सारी एक्टिवा और साइकिलें खड़ी हैं बाइक भी खड़ी है एक क्लीनिक स्टोर है।

दो औरतें पास में बैठी हैं एक औरत मोबाइल चला रही है एक लड़का उसके साथ बैठा है।